बोहोत ही सुंदर और बोहोत ही प्यारी जगह है ये।

इसमें बच्चे जवान लड़कियाँ लड़के सभी लोग अपने द्वारा प्रदर्शन करते हैं। अपनी कला का नाटक का प्रदर्शन करते हैं जो देखने में बहुत ही उम्दा किस्म का लगता है |

यहाँ पे जिसको जो फूल चाहिए गेंदा लोटस गुलाब कमल कोई जैसा फूल चाहिए अपने मन पसंददीदा फूल ले के जाता है और यहाँ से खरीद के लेके जाता है यहाँ पे बहुत ही अच्छे फूल मिलते हैं बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर।

इस से नई ऊर्जा तंदुरुस्ती सेहतमंद हम रहते है।

सब योगा ये लोग कर रहे हैं प्रयाराम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है योगा करना चाह --

ऐसा लग रहा है के ये शादियों का हाल है | इसकी सजावट बहोत ही सुपर तरीके से की गयी है | जिसके आगे परदे टांगे गए हैं हरे कलर के |

ये तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है हम सब इसकी हिफ़ाजत के लिए अपनी जान को निछावर कर देंगे।

दूर का बहुत ही अच्छा है।

ये प्यारे-प्यारे फूल मुर्तियाँ कलाकृतियों का ये संग्रह --

ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है जो भगवान की बनाई हुई हर एक चीज़ बहुत ही सूंदर होती है वैसे ही ये हरी-हरी घासें हरी-हरी पेड़-पौधे पहाड़ नदियाँ बहुत ही सूंदर है बहुत आकर्षक नज़ारा है यहाँ का बहुत ही नाइस ।